जो कि मैं देख सकता हूँ यह एक कमरा है।

और यहाँ पे बहुत सी खिड़कियां भी हैं।

और यहाँ पे बहुत सी फर्नीचर भी हैं।

कि यह एक गाड़ियों का शोरूम है।

और हम देख सकते हैं यहां पे स्कूल भी हैं।

यहां पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है कब पाता नहीं किसका हेरा गया है।

यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी बिल्डिंग हैं।

और नीचे बहुत कंक्रीट हो रहा है और बहुत से जंगले भी हैं।

और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से पेड़ भी हैं।

हम वैष्णवी को मारने जा रहे है।

और नीचे बहुत से लोग भी खड़े हुए हैं।

और यहां पे बहुत लंबी इमारत भी है।

यह बहुत गंदा लग रहा है देखने में।

कलली है वो भी कालला है।

और यहां पर फर्नीचर भी है नीचेए --

और यहां पर बहुत से लोग भी है।

और उसकी चीन टी_वी बहुत गंदी हैं।

और यहां पे बहोत से घर भी हैं।

और यहां पे बहोत सी कुर्सियां भी लगी हुईं हैं।

जैसे कि हम देख सकते हैं ये किराने की स्टोर है।